यह टी वी एस शो रूम के बाहर का दृश्य है।

यह एक खेत का दृश्य है जो बहोत हरा-भरा है।

यह मंदिर का दृश्य है जहां पर बहोत सारी मूर्तियां रखी हुई है।

यह एक होटल का दृश्य है।

नीचे एक बॉक्स है।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

बेंच है बेंच के ऊपर एक पर्स रखा हुआ है।

छोटी सी गेट है जिसका कलर ब्राउन --

छोटी छोटी बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग का कलर व्हाइट है।

एक कुर्सी हैं जिसके बगल में एक लड़का खड़ा है।

यह एक साइकिल का दृश्य है।

पौधों का कलर हरा है।

चट्टान के नीचे का कलर ब्लैक और ऊपर का कलर येलो है।

एक बेड लगा हुआ है बेड का कलर व्हाइट है उसमें एक बेडशीट लगा हुआ है।

और एक बिल्डिंग है जिसमें टी_वी_एस लिखा हुआ है।